यहां पर मेला जैसा दिखाई दे रहा है।

यह एक खेलने का मैदान हैं।

जहां पर काफी संख्या में लोग खेलने आए हैं तथा इसमें पीछे की ओर --

दिखाई दे रहा है यह दिखने में काफी बड़ा है इसका जो --

यह दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन की फोटो है यहां पर दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन पर --

इसकी दीवारें काफी मोटी हैं और यह काफी डरावनी जगह दिखाई दे रही है।

दूर से भारतीय डाक की सुविधा दी जाती है।

यह एक राज ऑटोमोबाइल की वर्क शॉप है।